यहां दीवार पर टी_वी भी लगा है और टाइल्स नज़र आ रही हैं।

यहां पर दो लड़के नाश्ता कर रहे हैं और मेज पर एक पानी की बोतल भी दिखाई दे रही है।

इस इमेज में सड़क के पास में एक रिपेयरिंग हाउस दिखाई दे रहा है।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

इस इमेज में सामने यहां पर एक बैंक नजर आ रहा है।

यहां पर एक व्यक्ति भी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।